कुछ लोग घास के पीलर के बगल में बैठे है और एक रेल पटरी भी गई है।

और वह पंडाल बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

एक छोटा सा सीलिंग फैन भी लगा है और व्हाइट कलर की तीन-चार लाइटे भी जल रही हैं।

उसकी लाइट की उजाले में घूम रहे हैं और इंजॉय कर रहे--

बच्चों के लिए कुछ बैट बॉल भी रखा हुआ है।

मुझे इस चित्र में एक नीला कलर का पर्दा--

मकान पे लिंटर पर एक कुर्सी लगी है और पीले कलर की लाइट भी जल रही है।

फूलों की सजावट की गई है और एक लोहे का--

बैनर में कुछ लोग खड़े हैं और एक महिला साफ सफाई करती हुई दिख रही है और कुछ लोग--

और पार्क में बहोत ही हरे हरे बड़े बड़े--

मुझे इस चित्र में एक हार का माल दिख रहा है।

एक व्यक्ति मैदान में खेल रहा है।

और मैदान के चारों तरफ दीवारें भी हैं।

और इसका गेट गुब्बारे से सजाया गया है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल --

का एक बहोत बढ़िया दुकान है और इधर से ई रिक्सा भी बहोत सेल होता है।

मुझे इस चित्र में एक फल की दुकान दिख रही है।

बहोत ही बढ़िया सोफा लगा है और टेबल भी लगा है।

रोड दिखाई दे रहा है रोड के दोनों किनारे पर--